ऑलरेडी इसमें बहुत सारे समस्याएँ आ गई हैं अक्सर अक्सर देख के पता लगता है कि ये एक्सीडेंटल कार है।

इसलिए लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक के साथ कार को चलाना चाहिए ताकि ऐसी अवस्था में कोई आने की जल्दीबाजी न हो।

ये तस्वीर है। गुफा के नीचे तस्वीर है साथ ही साथ इसमें ये भी दर्शाया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं--